सामने एक रेड कलर की बिल्डिंग है।

बहोत सारी मशीनें भी रखी हुई है।

यह एक डेयरी फार्म की--

यहां पर बहोत सारी फिश रखी हुई है।

यह एक बिल्डिंग की छत है जिस पर एक --

बहोत सारे फ्लावर दिख रहे हैं जो वाइट --

और दरवाजे ब्राउन कलर के हैं।

खिलौने भी दिख रहे हैं।

कुछ मीठा भी रखा हुआ है।

एक गेट टाइप का बना हुआ है।

गेंदे के फूल लगे हुए हैं।

कुछ पोस्टर्स भी लगे हुए है जिसमें डांसर डांस कर रहे है।